और यहां पर पास में बाल्टीयाँ दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक पुराना घर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जोकि बैंक आफ इंडिया का है और यह एम_पी नगर में स्थित है।

और येह ऑरेंज पीले कलर के किरणे देखा रहा है।